ये किसी जगह का नजारा है जहां पे काम चल रहा है बहोत बड़ी बिल्डिंग बन रही है।

यहाँ पे कुछ लोग ऊपर काम कर रहे नीचे लोहे के तार पड़े हुए हैं सरिए पड़े हुए हैं राइट साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है बोत बड़ी।

रेड कलर का बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

और कुछ एक झंडे दिख रहे हैं छोटे-मोटे यहाँ पे ग्रीन कलर के रेड कलर के।

ब्लू कलर का घर दिख रहा है और पेड़ के ऊपर हरे हरे कुछ पत्ते दिख रहे हैं और लेफ्ट राइट में कुछ दो दरवाजे दिख रहे है।

ये किसी ऑफिस का नजारा दिख रहा है जहां पे एक आदमी वहां पे बैठा हुआ राइट साइड में--

और कुछ बॉक्स है उसमें कुछ डायरिया पड़ी हुई है शायद बहोत बड़ी--

और सामने कच्चे केले दिख रहे हैं ग्रीन कलर के किले दिख रहे--

यहाँ पे कुछ एक क्रेन दिख रही है जो किसी छोटी सी होटल को उठा रही है।

यहां पे एक बाइक खड़ा है ब्लैक कलर का पेंट पहन रखा पजामा पहन रखा--

और एक खंभा दिख रहा है लाइट का और लेफ्ट साइड में--

और दीवार के ऊपर उधर पेंट किया हुआ नहीं है इधर पेंट किया हुआ दिख रहा है।

और कुछ पहाड़ दिख रही है बहोत छोटी छोटी।

और यहां पे पूल है पूल के बगल में एक लड़का खड़ा है आदमी--

इसने शूज़ पेहन रखे हैं माथे पर कैप लगा रखी है।

ये किसी माल का नजारा दिख रहा है। जहां पे बहोत सारे दुकाने दिख रही है छोटी छोटी।

जो शॉप दिख रही है कुछ यहां पर --

और दीवार पर वाइट कलर का पेंट हो रखा है।

अ उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ ग्रीन पट्टी के अंदर वो दिख रहा है।

बहुत सारे लोग यहां पर जिम करते हुए दिख रहे कोई कहां पे कोई कहां पे --

थ्री डिजिटल कुछ घर जैसा दिख रहा है जहां पे--